यह पिक्चर एक पुल की है।

और इसमें दो इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिख रही है जिससे कुछ वायर्स भी कनेक्टेड हैं।

ये पिक्चर एक सीमेंट की फैक्ट्री की है।

इसमें कुछ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

और इसके दीवार का कलर यलो है।

यह पिक्चर एक मछली मार्केट की है।

पीछे हमारा झंडा भी लगा हुआ है।

इस पिक्चर में एक इलेक्ट्रिक हाउस दिख रहा है।

जिसमें काफी सारे इलेक्ट्रिक कलेक्शन दिख रहे हैं।

यह पिक्चर लॉर्ड बुद्धा के टेंपल की है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा रखी हुई है।

इसमें पर्पल कलर की लाइट भी जल रही है।

ये पिक्चर एक मॉल की है।

इसमें कुछ व्यक्ति और कुछ महिलाएं भी दिख रही है।

जिसमें सामान बिखरा हुआ है।

और नीचे वाइट कलर की टाइस भी है।

जहाँ पर काफी सारी लेडीज़ के सामान मिल रहे हैं।

नीचे की साइड वाइट कलर की टाइस भी है।

ऊपर की साइड रेड और यलो कलर के बैलूंस भी दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में काफी सारे घर दिखाई दे रहे हैं और इसमें कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इसमें काफी सारे वाहन भी दिख रहे हैं।

और ऊपर का मौसम काफी सुहाना भी है।

और इसके दीवार का कलर वाइट है।

जिसके बाहर काफी सारे पुलिस कार्स खड़े हैं।

इसमें कुछ पुलिस भी दिखाई दे रहे हैं।

और इसमें काफी सारे व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

यह घर वाइट कलर का है।

यह पिक्चर एक पार्क का है जिसके बीच से दो रास्ता गया हुआ है।

और इसमें काफी सारे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

और इसमें एक व्यक्ति भी दिख रहा है।

ये पिक्चर एक हॉस्पिटल के हॉल का है।

और इसमें काफी सारे विंडोस भी हैं।

ऊपर की साइड काफी सारी लाइट्स दिख रही है।

यह सारे केक्स और पेस्ट्री सॉस के अंदर पैक्ड है।

नीचे की साइड वुडन टाइल्स भी है।

और इसकी दीवार क्रीम कलर की है।

इस पिक्चर में एक डिश दिख रहा है।

जो ब्लैक कलर के प्लेट में रखी गई है।

कपड़े की दुकान का है।

इसके बाहर की साइड ब्लैक और--

वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

नीचे की साइड ग्रीन ग्रास कारपेट है।

और दो विंडोस भी नजर आ रही है।

इसमें कुछ ट्यूबलाइट्स भी जल रही हैं।

इस पिक्चर में एक जिम दिखाई दे रही है।

इस जिम में काफी सारे एक्सरसाइजिंग टूल्स लगे हुए हैं।

और आगे की साइड कुछ बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं।

इसके आगे यलो कलर की ग्रिल है।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

इसमें दो-तीन विंडोस भी नजर आ रही हैं।

यह पिक्चर एक रेस्टोरेंट का है।

जिसमें काफी कंफर्टेबल सोफा और टेबल लगी हुई है।

और इसके दीवार का कलर वाइट है।

जिसका नाम फील द बीट है।

इसमें काफी सारे बच्चे डांस सीख रहे हैं।

इसमें एक डीजे बॉक्स भी दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक घर दिख रहा है।

जिसमें एक इलेक्ट्रिक पोल नजर आ रहा है।

इसमें कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

जहां पर स्टोन से बनी हुई आकृतियों से पानी निकल रहा है।

नीचे की साइड घास उगी हुई है।

जिसमें काफी कंफर्टेबल टेबल्स और चेयर्स लगी हुई है।

और इसमें दो-तीन लोग भी नजर आ रहे हैं।

इसमें वाइट कलर के सोफा लगे हुए हैं।

और ऊपर काफी सारी लाइट जल रही है।

ये पेट्रोल पंप येलो और वाइट कलर का है।

यह पिक्चर एक स्टेडियम का है।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

और ऊपर कुछ लाइट्स भी चल रही हैं।

आगे की साइड काफी सारी घर भी दिख रही है।

नीचे की साइड वाइट कलर की टाइस भी है।

और इसमें कुछ येलो कलर की लाइट्स लगी हुई है।

इस पिक्चर में काफी सारे पैरोट्स और कबूतर दिख रहे हैं।

यह पिंजरा ब्लैक कलर का है।

बीच में एक इनका लीडर और--